meet the gimp में आपका स्वागत है यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
यहाँ foreground एवं background colour dialog है आप 6 भिन्न तरीकों से रंगों का चुनाव कर सकते हैं
इस पहले तरीके में आप h s v r g b के रूप में कुछ sliders देख सकते हैं और इनका तात्पर्य क्रमशः hue ह्यू saturation saturation value value red red green green blue blue हैं
यहाँ मैं foreground रंग के रूप में काले रंग का चयन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि hue ह्यू saturation saturation value value red red green green blue blue सभी की value शून्य है
और जब मैं hue ह्यू की value बढ़ाता hue तो कुछ नहीं बदलता
काला रंग काला ही बना रहता है क्योंकि value शून्य है और जब मैं value value बढ़ाता हूँ मुझे विभिन्न gray tones प्राप्त होते हैं
मैं saturation saturation को बढ़ा सकता हूँ जबकि value शून्य है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता
किन्तु आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं saturation saturation बढ़ाता हूँ अन्य sliders में रंग थोड़े बदल जाते हैं
यदि मैं hue ह्यू को खींचता hue तो कुछ नहीं होता किन्तु जब मैं saturation saturation को खींचता hue value के रंग नीले रंग के एक प्रकार में बदल जाते हैं
यदि आप hsv प्रणाली से एक रंग का चयन करना चाहते हैं तो सिर्फ saturation saturation एवं value sliders को ऊपर खींचें और आपको hue ह्यू sliders में इन्द्रधनुष के विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं और आप इन रंगों में से चुन सकते हैं
यहाँ आप देख सकते हैं कि red red green green और blue blue sliders hsv sliders के अनुसार बदल जाते हैं और एक रंग का चयन करना सरल हो जाता है
यदि आप एक हल्का रंग चाहते हैं तो saturation saturation slider को समायोजित करें और यदि आप गहरे रंग का एक अच्छा मिश्रण चाहते हैं तो तदनुसार value value slider को slider करें और red red green green या blue blue slider में एक राशि का चयन करें
अतः hue ह्यू saturation saturation एवं value value को समझना बहुत आसान नहीं है किन्तु यह रंगों का चयन करने का एक अच्छा तरीका है
मैं इस dialog का केवल तब प्रयोग करता हूँ जब मुझे एक विशेष रंग set करना होता है
उदाहरण के लिए यदि मैं सटीक मध्यम gray रंग प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैं value value slider को 50 तक खींचता हूँ अतः value value 0% और 100% के बीच विभाजित हो जाती है और rgb slider में मैं 127 तक संख्याएं set करता हूँ और आपको सटीक मध्यम gray रंग प्राप्त हो जाता है
अब अन्य dialogs पर एक नजर डालते हैं
यह dialog hsv रंग model पर आधारित है और सर्वप्रथम आप वृत्त में उस रंग का चयन करते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं
और फिर त्रिभुज में value और saturation का चयन करते हैं
अतः जब एक hue का चयन किया जाता है तो आपको उस hue के लिए त्रिभुज में value और saturation की विभिन्न values प्राप्त होती हैं
अगला dialog यहाँ the गए के समान है
इस dialog में आपके पास hue का चयन करने के लिए एक strip होती है और आपको इस चतुर्भुज में वही in प्राप्त होता है जो इस त्रिभुज में है और अब आप इस क्षेत्र से यहाँ अपने in का चयन कर सकते हैं या आप यहाँ hue बदल सकते हैं और अपना नया in चुन सकते हैं
यहाँ आप saturation के लिए भी switch कर सकते हैं
और इस ओर स्लाइड करने के द्वारा value और इस ओर स्लाइड करने के द्वारा hue के संयोजन का चयन करते हैं
आप यहाँ एक गहरा रंग प्राप्त करने के लिए मान set करते हैं और तदनुसार saturation और hue को बदलते हैं
उसी तरह से यह red green एवं blue in के लिए कार्य करता है
मैं रंगों में blue रंग की मात्रा बदल सकता हूँ जितना मैं बदलना चाहता हूँ और फिर उसी तरह red और green रंग की मात्रा भी बदल सकते हैं
यह dialog पिछले वाले के जितना नवाचारयुक्त नहीं है
अगला dialog water colour mixup water colour mixup है
यहाँ यह slider में tipping की तीव्रता को समायोजित करते हैं
और आप इस box से एक रंग चुन सकते हैं
और यहाँ यह परिणामी रंग होगा
आप एक रंग का चयन कर सकते हैं इसे पीला रंग मान लेते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा s नीला और थोड़ा s लाल रंग मिला सकता you और परिणामस्वरूप जो रंग आपको प्राप्त होता है वह बहुत मटमैला है
मैं इस dialog का ज्यादा प्रयोग नहीं करता हूँ
यह dialog सक्रिय pallet दिखाता है और आप कहीं और pallet set कर सकते हैं
यह केवल graphic डिजाइनिंग एवं web डिजाइनिंग के लिए उपयोगी है मैंने वास्तव में कभी भी इस dialog के साथ बहुत अधिक काम नहीं किया है
एक और चीज़ जिसे यहाँ cover किया जाना चाहिये वह printer रंगों को cover करना है
मुझे लगता है कि यह dialog केवल व्यावसायिक printers या उन printers के लिए उपयोगी है जो red red green green और blue blue के बजाय cyan cyan meganta magenta तथा yellow yellow का प्रयोग करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे रंगों को घटाते हैं
red red green green एवं blue blue रंग mix जाते हैं और white रंग के साथ मिश्रित हो जाते हैं और printing के साथ यदि मैं cyan cyan meganta magenta एवं yellow yellow को शून्य set करता हूँ तो साधारणतया white white paper printed होता है
यदि मुझे black black रंग print करना हो तो मैं cyan cyan meganta मॅजेन्टा एवं yellow yellow को 100 set कर सकता हूँ और मुझे पूर्णरूपेण black paper प्राप्त होता है
यह रंग ये dyes डाइज प्रकाश से substract हो जाते हैं और केवल cyan cyan रंग को परावर्तित करते हैं
और उन्हें मिलाने के द्वारा आप प्रकाश से अधिक से अधिक रंग घटा सकते हैं और आप सभी रंग प्राप्त कर सकते हैं तथा print कर सकते हैं
यहाँ कुछ दृश्य रंग हैं जिन्हें printed नहीं किया जा सकता है और इसलिए आपके परिणाम भिन्न होते हैं
चौथा slider k है जो black रंग को प्रदर्शित करता है
blue blue रंग के साथ mismatch से बचने के लिए इसे black black रंग के लिए k के रूप में set किया जाता है
जब मैं white white रंग पर click करता हूँ जो कि मेरा background रंग है तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है
रंग समान हैं किन्तु cyan cyan slider नीचे चला गया है और k slider ऊपर चला गया है
इसे दोहराते हैं
y slider को 40 तक m को 80 तक और और c को 20 तक slide करें
अब जब मैं रंग का चयन करता हूँ तो आपको m slider पर 75 y पर 26 और k पर 20 प्राप्त होता है
अतः आप देख सकते हैं कि रंगों को बदला नहीं गया है बल्कि cyan magenta और yellow का मिश्रण जो वहां image में पहले था magenta yellow एवं black में बदल गया है
black ink थोड़ी भद्दी है इसलिए यहाँ static बिंदु के लिए cyan magenta और yellow के बजाय magenta yellow और black के मिश्रण का प्रयोग किया गया है
अतः अब हम रंग चयन के सभी छः dialogs को colour कर लिया है
किन्तु ये दो रंग swaps शेष बचे रहते हैं
आगे का रंग मेरा foreground रंग हैं और दूसरा मेरा background रंग है और जब मैं इस पर click करता हूँ आप यहाँ रंग set कर सकते हैं
और यदि आप अपनी image या अपने चयन में इन रंगों को रखना चाहते हैं तो सिर्फ उस क्षेत्र में इन रंगों को खींचते हैं और यह उस रंग से भर जाता है
आपके पास tool box में ये रंग swaps हो सकते हैं
file फ़ाइल पर उसके बाद preferences प्रिफरेन्सस पर और फिर tool box टूल बॉक्स पर जाएँ और यहाँ आप foreground एवं background रंग और brush एवं सक्रिय image देख सकते हैं
मैं इसे बाद में switch off कर दूंगा क्योंकि यह my tool box में अत्यधिक स्थान लेता है
रंग swaps के दायें ऊपरी किनारे पर यह छोटा icon foreground और background रंग को एक्सचेंज करने के लिए है
यह x की key दबाकर भी किया जा सकता है
निचले बाएं किनारे पर यह icon foreground एवं background रंगों को काले एवं सफ़ेद रंग में left करने के लिए है
यह एक अच्छा नया feature है यह एक कलरपिकर है और आप अपनी screen से या एक वेबसाईट से किसी भी रंग का चयन कर सकते हैं
और and में यहाँ एक स्थान है जहाँ आप रंगों को परिभाषित करने के लिए hex code hex code देख सकते हैं
और जब मैं रंग बदलता how तो आप देख सकते हैं कि code किस प्रकार बदलता है और मैं hex code hex code में भी type कर सकता how और रंग प्राप्त कर सकता how या आप रंग का name भी type कर सकते हैं
उदाहरण के लिए मैं l type करता हूँ और आपको सभी रंग lawn green lawn green प्राप्त होते हैं यह lawn green है अतः यह रंग dialog का विवरण था
मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है
यह tutorial प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ